ये आप लोग देख सकते है सामने की तरफ ये एक होटल है जिसका नाम र होटल राहुल इन है ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है बाहर से और इसका होटल --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

यहाँ पर आप लोग देख सकते है ये एक रेस्टोरेंट कैफै है जिसका नाम पंचामृतम फूडपार्क है।

इस मंदिर में सफेद कलर की गुंबद है इसके सामने एक पेड़ की डाल दिखाई दे रही है इसके मकान में हल्के पीले और लाल कलर का उपयोग किया गया है।